साइड ही मे एक कैमरा भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

तथा हाथ में ग्लव्स पहने हुए नजर आ रहे हैं।

सामने की ओर कुछ चट्टानें भी नजर आ रही हैं।

यह फोटो किसी ओम शांति की जगह से लिया हुआ नजर आ रहा है।

कुछ महिलाएं दिया जलाती हुई नजर आ रही है।

कुछ महिलाओं ने मास्क लगा रखा है इनमें से एक पुरुष भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में हमें दो बस दिखाई दे रही है।

उसके हाथ में कुछ पैसे भी नजर आ रहे हैं पास ही में केले भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

पास ही में एक एल_इ_डी भी लगी हुई नजर आ रही है।

ऐसा लगता है यह किसी स्थान पर घूमने आए हुए हैं।

यह फोटो किसी इन्वेटर बैटरी की दुकान से लिया हुआ नजर आ रहा है।

इस फोटो में हमें सामने की ओर एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है जिसमें सामने वाली दीवार पर एक एल_ई_डी और एक ए_सी भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

समान नीचे भी रखा हुआ नजर आ रहा है।

ऊपर की ओर कुछ सफेद रंग के बैलूंस तथा--

ये सामने एक मकान भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में सामने की ओर हमें काफी सारे बैट और बॉल रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इनके फेस को ब्लर किया गया है सामने की ओर एक।

तथा उपर की ओर कुछ लाइटिंग का सिस्टम भी किया हुआ है।

इनका रंग काला है ऊपर की ओर एक पोस्टर भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

जिसमें गेट पर पैंट और टी-शर्ट और एक बेल्ट टंगी हुई नजर आ रही है।

जिनके पास एक बैग भी रखा हुआ नजर आ रहा है।